ये देखिये टमाटर रखें हुए हैं कितने अच्छे टमाटर रखें हुए हैं लाल हैं हरे हैं।

ये उत्तरा म-खंड की जो शॉप है जो इसपे सब उपलब्ध है।

ये झूले वगेरे हैं जिसपे झूलते हैं।

ये राजा-महाराजाओं के समय की ये हवेली है सब की एक सी डिजाईन है बिलकुल आईने जैसे और दोनों साथ हैं और ये बीच में से रस्ता गयी है।